कुत्ते के पास एक बहोत ही सुंदर--

क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ इनको देख रहे हैं।

यहां पर बहोत ही प्यारे भुट्टे और पौधे हैं।

इसके साथ जयपुर मेला भी लगा हुआ है।

यहां से हम कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं।

जोकि बहोत ही सुंदर क्ले बना हुआ है।

ये एक खेत की पिक्चर है।

यहां पर उनका एक ऑफिस भी बना हुआ है।

जो के किसी मंदिर में झांकी निकल रही हों।

यहां पर दुकान पर कुछ गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

पारक पर एक लड़का सैर कर रहा है।

अजंता डेरी पर दूध दही और--

दरवेश टूर एंड ट्रेवल्स वालों की बस है।

ये बसे बहोत दूर तक जाती है।

एक बार भी बना हुआ है।

ये फोटो एक चर्च की फोटो है।

बच्चे जूडो कराटे सीख रहे हैं बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है।